और यहाँ मोटा-मोटा तार लगा हुआ भी है।

बगल में एक घर छू उ उ चरतल्ला घर है।

और एक गेट है और एक बच्चा भी है। एक राजा ----

कुछ महिलाये इधर बैठी हुई कुछ उधर बैठी हुई उधर फैन वगैरह भी लगा हुआ है। लाइट भी जल रहा है।

बाढ़ आ गया है। बाढ़ में ये एक बस जा रहा है और सारा घर डूबने जैसा लग रहा है।

एक छोटी कार है वो भी जा रही है। एक लोग है वो हुए भी जा रहे है।

यहाँ पे दो घोड़ा है।

एक नैनो गाड़ी जा रही है। एक रिक्शा जा रहा है। कुछ एक वाइट कार है। एक ऑटो है उसमे से पीला है।

हाथ से एक प्लाईवुड का एक आ अलमीरा बनाया जाया गया है।

इ गोदरेज बनाया गया है दीवान --